प्रतियोगिता हो रही है।

यह एक दुकान है यहां सब कुछ मिलता है।

यह जगह बहोत सुंदर दिख रहा है।

यह बहुत सारे दुकान है।

और यहां कुछ भी--

और ये अच्छा है।

यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए--

सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई--

और यह बहुत अच्छी दि--

और ये सुंदर है।

और यह बहुत सुंदर दिख--

और यहां दो लोंग खड़े हुए हैं।

और यह बहुत ही--

होटल है और यहां कुछ लोग--